ये सेल बगैरा जे पड़ा हुआ है और उसके नीचे ऐ कुछ पिक्‍चर बगैरा लगी हुई हैं और ये--

यहां पर एक कमरा नजर आ रहा है जिसके अंदर ए सामने एक पिक्‍चर लगी हुई है और उसके नीचे --

शल्‍ट और ब्‍लैक कलर की पेंट पहनी हुई है उसके आस-पास बहुत जादा जंगल सा बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है।

लड़के ने लाल कपड़े के कपड़े यहाँ पर लाइटिंग जल रही है बहुत खूबसूरत लग रहा --

सामने एक पुराने किस्म का कुछ मीनार नज़र आ रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा दराते है और ये एक सुरंग जा रही है स--

उसमें एक अ लड़कियां यां और लड़कियां बैठी हुई है बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा है ।

यहां पर शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है जिसमें लोग बिल्डिंग --

जिसके पास एक आदि ये दरक्‍त नजर आ रहा है उसके नीचे एक आदमी --

कुछ लड़के के खड़े है उसके सामने एक गाड़ी है जो--

यहां पर सुक्‍ख दियो पैलेस नजर आ रहा है और इसी के सामने कुछ

उसके इसके के साथ एक आदमी खड़े है रेड कलर के कपड़े पहने हुये है खूबसूरत लग रहे है।